सोफा टाइप का बनाया गया है एक लोहा का गेट है जिसपर लोहे के डिजाइन दार बनाए गए हैं उस पर ताला लगा--

और भी साइड में मिट्टी है छोटे छोटे घास है लोहा का ग्रिल --

साइकल है काँच का पूरा उसे किया गया है एल_इ_डी लाइट है।

खेल रहे हैं। कुछ खड़े हैं। बैलून टाइप के बांस पर लगाए गए हैं। बांस का पूरा जगह बनाया गया है सीढ़ी बनाए गए हैं।

फोन चला रहा है टी टेबल टेबल टाइप का है जिस पर बहोत सारे सामने रखी गई है जैसे--

एक लड़का को दिखाया जा रहा है जो खड़ा है कुर्ता पहने हुए वो फ़ोटोस लेरा है उसके बगल में एक रेड कलर का थोडा बड़ा गमला है।

दो विंडोज़ हैं विंडोज पर लोहे की ग्रील लगाए गए है बहोत सारे तुलसी मंदिर टाइप के बनाए गए--

गेंदा फूल के माला से कुछ आदमी हैं जो उसे टरत को टान रहे हैं फ्लैट दिख रहा है फ्लैट में विंडोज दिख रहे हैं।

एक कैफे हाऊस दिखाया जा रहा है जिसके बाहर पे लाइटिंग का काम किया गया है जिस पर लिखा गया है कैफे कुल्फी हाउस ।

अं लोहा के ग्रिल लगाए गए हैं बाहर स्कूटीज बाइक्स खड़े हैं।

टाइप का दिखाया गया जिस पर बहोत सारे विंडो है। विंडोज पर कांच लगाए गए हैं।